और कुछ बिल्डिंग है और यहा पर कुछ पेड़ पौधे भी है। कुछ बिजली तार है और कुछ बादल छाए हुए भी हैं।

सब्जी मंडी की दुकान है और एक फलों की भी दुकान है यहां पर कुछ केले कुछ संतरे कुछ अनार और कुछ निम्बू और कुछ के उ मोसमी रखी हुई है यहां पर एक बाल्टी रखी है येल्लो कलर की --

कंपनी गार्डन है और इसके अंदर कुछ झूले भी लगे हुए हैं | कुछ भी टंगी हुई हैं और लोहे की ग्रिरील भी हैं और कुछ पेड़ -पौधे कुछ तार हैं।